चारो तरफ से बड़ा सा पार्क है जिसमे चारो तरफ से पेड़ पौधे है और खम्भे गड़े हुए है उसमे लाइटिंग की तार लगे हुए है। पीछे कुछ खेलने के बच्चो के समान है|

नीचे अ नीचे कुछ कंकर डले हुए है कुछ मिट्टी डली हुई है कुछ अ जो की काट की बगल से कोई और अ पीछे एक पेड़ पौधे है छोटे छोटे --

विगन बुक सेंटर स्टेशनरी के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसमें होलसेल बुक सेलर लिखा हुआ --

बनी हुई है एक रस्सा लटक रहा है पीछे कुछ बड़े बड़े पेड़ है चारों तरफ से घास है बगल से कुछ इमारते है और एक उसमें टंकी रखी हुई है पानी की लहरें आ रही है गहरी सी पानी की।

बड़ा सा पर्वत है उसके चारो तरफ से पेड़-पौधे गड़े हुए हैं। एक आदमी है जो कि बनियान पहेने खड़ा हुआ है। नीचे से पत्थरो में से कुछ लडकियां निकल रही हैं। चारो तरफ वो पत्थर ही पत्थर हैं। बड़े-बड़े टोर बने हुए हैं।

हर तरफ से पर्वत पहाड़ है और पत्थरो के उसमे एक पत्थर से हाथ टिकाये हुए एक आदमी खड़ा है जो ब्लू कलर के जिन्स और ब्लू टी-शर्ट और ऊपर से टोपी लगाईं हुए खड़ा हुआ है और नीचे काई लगी हुई है पत्थरों में।

न एक बड़ा सा चारो तरफ से एक गेट है|